नीचे की तरफ सिडिया दिखाई दिए सीडियों के ऊपर चनल लगा हुआ है रेलिंग दिखाई दे रही है जो की स्टील की बनी हुई है बाहर की तरफ एक बोर्ड लगा --

यहाँ पर एक रेल्वे स्टेशन का दृश्य है जहा पर टीशर्ट दिख रहा है नीचे की तरफ देखने पर इंजन दिखाई दे रहा है जो की काले रंग का--

यह एक स्टेशन का दृश्य है। जिसमे टीशर्ट दिखाई दे रहा है लाइट लगी हुई है लाइट जल रही है पट्रीया दिखाई दे रही है ट्रक दिखाई दे रहा है जिसपे एक ट्रेन दिखाई दे रही है ट्रेन का इंजन जो है वो बादामी रंग का है जिसपे नीले सरकाल बने हुए है पीछे डिब्बे दिखाई दे रहे है नीचे का फर्श दिखाई दे रहा है।

और एक दीवार दिखाई दे रही है जो की सफ़ेद रंग की है जिस पर एक बोर्ड लगा है वह नीले रंग का है और सफ़ेद रंग से कुछ लिखा हुआ है।

नीचे कुछ कुर्सिया दिखाई दे रही है जहा पर एक रैक दिखाई दे रही जिसके सहारे एक आदमी खड़ा हुआ है उस मे एक और आदमी दिखाई दे रहा।

पेड़ों की पत्तियां दिखाई दे रही है जो कि हरी-हरी जिन पर फैली हुई है नीचे हरे-हरे पौधे दिखाई दे रहे हैं बिल पीछे दीवार दिखाई दे रही है दीवारों पर के सारे पेड़--

पर एक बीच में लट्ठा लगा हुआ है जो की शिला पर लगा हुआ है जिसके चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं पेड़ पौधों में हरी हरी पत्तियां लगी हुई है नी--

अधिकतर मिट्टी दिखाई दे रही है जहां पर हरी हरी घास दिखाई दे रही है ऊपर जाने का रास्ता दिखाई दे रहा है सीढ़ियां दिखाई दे रही है जिसके सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

हॉल का दृश्य है जहापे परदे दिखाई दे रहे है लाईटे दिखाई दे रही है लाईटे जल रही है सीट दिखाई दे रही है जहा पे कुछ लोग बैठे हुए है कुछ लोग खड़े हुए है।